देख के कुछ लग रहा है कि ऑफिस है या कोई एक आदमी पढ़ा रहा है।

और पेड़-पौधा बहुत ही अच्छे दिख रहे है। और छेड़ दिए गए।

और एक लेडीज और एक जें से बेग टांग के जा रहे हैं और एक रिक्शा दिख रहा है।

और मछलियाँ काट रहे है और बहोत सारे आदमी खरीद रहे है और काफी भीड़ भी--

घर भी है और अदबी लोग खड़े हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है पे --

इसको देख के तो लग रहा है की जिम का फोटो है।